हमारे सामने देखे तो बहुत ही बड़े बड़े--

पत्थर के ऊपर बहोत शानदार डिजाइनिंग बनी हुई है तरह तरह के चित्र अ बनाएं हुए हैं।

एक घर है घर का दरवाजा दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का है और लोहे का बना हुआ है घर के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है घर के --

इस रूम के अंदर है दीवार के पास एक पर्दा लगा हुआ है ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है।

और बीच में कुछ कपड़े लटक रहे एक औरतों के कपड़े हैं छोटे बड़े हैं छोटी बड़ी साइज है अलग अलग कलर है।

कुर्सियां रखी हुई है जो कि सफेद कलर की है बीच में बहुत सारी बेंच पड़ी है जो कि लकड़ी की है।

हरे कलर की छोटी छोटी झाड़ियां और छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं ये पत्थर हैं वो ब्लैक कलर दिखाई दे रहे हैं जोकि बहोत --

एस_बी_आई बैंक की फोटो है एस_बी_आई बैंक के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है दो दरवाजे लगे हुए--

जय मां करणी फ्रूट मर्चेंडे यहां तरह तरह के फल फ्रूट्स मिलते हैं जैसे नारियल --

पीछे एक बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और बिल्डिंग के आगे बहोत सारी गाड़ियां और टैक्सियां खड़ी है।

पीछे देखा जाए तो पंखे लगे हुए हैं और सफेद कलर की फर्नीचर है पीछे कुछ आचार के डिब्बे रखे हुए हैं।

इस रूम के अंदर बहुत सारी मालाएं लटक रही है बीच में कुछ गमले और कुछ टोकरियां लटक रही है।

आदमियों के पास में दो चार मोटरसाइकिल खड़ी है और जमीन के ऊपर छोटे छोटे कचरे पड़े है प्लास्टिक वगैरह पॉलिथीन वगैरह बिखरी हुई है।

पीछे हेयर एक्सपर्ट की एक चार्ट बनी हुई है उसके पीछे बहोत सारी दुकानें बनी हुई है।

यह एक स्कूल है स्कूल के बाहर बीचों बीच एक दरवाजा लगा हुआ है गेट खिड़की लगी हुई है उसके अंदर से एक --

आदमी खड़े हैं बाहर कुछ स्कूटी मोटरसाइकिल और साइकिल्स खड़ी की हुई है।

यहां पर नीचे कुछ चारपाई पड़ी है कुछ स्टूल पड़ी है कुछ सफेद कलर की है कुछ येलो कलर की है।

और सामने दीवार के पास एक कैलेंडर है टंगा हुआ है और तरह-तरह की पैकेट पड़े है यहां पर टार्च के पैकेट भी पड़े है।